देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है और एन_एस ये लिखा हुआ है।

बना है तो अच्छा रहेगा और थैंक यू है।

में जो नहाता है वो उसका अच्छा है बहुत सारा आदमी रहता है यहाँ देखने में अच्छा लगता है ओके बाय बाय बाय ।

और यहां एक ये यह पक्का है बहुत अच्छा है।